येखे हेलमेट पड़ी है अदमी मेहरारू कोई ना लउकत ह छोटा-छोटा घास लगल ह ऊपर सफेद-सफेद आसमान ह।

धनिया को दवाई छिड़कता।